बड़े स्क्रीन की भी टीवीयाँ दिख दिख रही हैं। बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे।

यहाँ पे देखिये छोटा सा अं --

ऑफर लगे हुए हैं और स्टैचू वगेरह --

सूरज भी दिखाई दे रहा है। यहाँ का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत --

कुछ बुजुर्ग भी दिख रहे है एक दो लेडिस भी दिख रही --

यहाँ पर देखिये ये एक कॉलेज है। ये जो कॉलेज है ये --

और यहाँ पर व्हाइट कलर की पेंटिंग है। मरून कलर की पेंटिंग है। एक लोग भी दिख रहे --

और यहाँ पे बाइकस की थोड़ी-थोड़ी कांच दिखाई दे रही है हैंडल दिख रहे है।

बोर्ड भी लगा हुआ है किशान हौशपिटल का।

ये मेरे ख्याल शे किशी अ मतलब टेंट की है।

और बाकि आस-पास की सारी दुकाने बंद है।